इसमें बहुत सारी लड़कियां दिखाई दे रही हैं जिन्होंने रंग बिरंगी साड़ी कर रखी हुई है।

इस बिल्डिंग के उपर दो व्हाइट कलर के टैंक भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें कुछ बच्चे और कुछ औरतें ब्लैक कलर की चेयर पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

इसमें कुछ बिजली के बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें एक बच्चा दिखाई दे रहा है जिस जिसने येलो कलर की शर्ट और पिंक कलर की पैन्ट पहने हुए है।

इसके जो चारों तरफ बाउंड्री है वो ब्राउन कलर से की हुई दिखाई दे रही है।

जिस टेबल पर ब्लैक कलर की ट्रे में येलो कलर का नॉनवेज जैसा कुछ रखा हुआ है।

और कुछ ग्रीन कलर के पेड़ भी आसपास दिखाई दे रहे हैं आसमान का कलर ब्लू --

जिस पर येल्लो ब्राउन और ऑरेंज कलर का पेंट हो रखा है।

इस रो के साइड में एक स्टील की केतली रखी हुई है।

इसकी साइड में एक बाइक भी दिखाई दे रही है खड़ी हुई।

इसमें दो गाड़ियां हैं। एक व्हाइट कलर की और एक ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है।

यह एक सैलून दिखाई दे रहा है।

ये जो बिल्डिंग है मदरसे की ये येलो कलर की दिखाई दे रही है।

यह एक मस्जिद के डिजाइन जैसा दिखाई दे रहा है।